यहां पर एक गाय खड़ी हुई है जिसका कलर ब्लैक और व्हाइट है जिसके गले में ग्रीन कलर की रस्सी बंधी हुई है।

गाय के सामने एक बड़ी सी टोकरी रखी हुई है जिसमे चारा रखा हुआ है यहां पर बहुत सारी मिटी पड़ी दिखाई दे रही है यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में काफी सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सारी मिट्टी पड़ी हुई है जो से दिखाई दे रही है पानी पे बहुत सारा कूड़ा दिखाई दे रहा है।

ये एक सुबह का नजारा हैं बड़ा सा हवाई जहाज दिखाई दे रहा है जो व्हाइट और रेड कलर का है जिसमें कुछ लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहा पर राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है जो काफी सुन्दर लग रही है जिनके हाथ मे बांसुरी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बड़ा सा कुछ जानवर दिखाई दे रहा है जिसकी पूँछ काफी बड़ी है जो काफी बड़ा लग रहा है।

एक बड़ा सा जंगल है जहा पर कुछ टुरिस्ट घूमते हुए दिखाई दे रहे है जिनके कंधे पर कुछ बेग टंगे हुए दिखाई दे रहे है ये पाँच लोग है।

एक पनीर की सब्जी दिखाई दे रही है एक दाल दिखाई दे रही है एक कटोरी मे आचार दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो चम्मच दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है ये सड़क है जहाँ पर बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है जहाँ पर एक बस दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए है बस पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक कार भी खड़ी हुई है।

ये दिवारे काफी चमकदार लग रही है यहा पे कुछ लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैबहुत सारा समान पडा हुआ है कुछ बाल्टियाँ रखी हुई दिखाई दे रही--